और कुछ पेड़ के पौधे भी लगे हुए हैं।

उस मकान के सामने बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

मकान के ऊपर एक लोहे की ग्रिल लगी हुई है।

ये एक बहुत बड़ा दीवार का गेट है।

बिल्डिंग में बहोत सी रंग बिरंगी लाइटे भी जली हुई है।

और एक लड़का गाना गा रहा है और गिटार भी बजा रहा है।

ये एक बहोत बड़ा कपड़ो का शोरूम है।

इस रूम के अंदर एक बहुत सुंदर बेड रखा हुआ है।

स्कूल में बहुत सी खिड़कियां लगी हुई है।

और बहुत से पेड़ भी खड़े हुए हैं।